एक मेज पड़ी है जिसपे सफेद रंग की चादर बिछी हुई है।

यहां दो तीन नव नवैया भी दिखाई दे रही हैं जो लकड़ी की बनी हुई हैं।

यहाँ पे पत्ता गोभी टमाटर मटर दिखाई दे रहे हैं।

दरवाजा खिड़की का दिखाई दरवाजा लकड़ी का दिखाई दे रहा है।

इस रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सारी लाइटें लगी हुई है।

यहां पे बहोत सारे लाइटें जल रही हैं।

आगे गाड़ी दिखाई दे रही है जिससे लाइट लग रही है।

यहां पे एक दुकान दिखाई दे रही है यहां पे बहुत सारे पैकेट टंगे हुए हैं।

यहां पे एक आदमी दिखाई दे रहा है जो नीले रंग का कोट पैंट पहने हुए हैं।

एक औरत खड़ी है जो फिरोजी क क साड़ी पहने हुए हैं।

यहां पे एक सूरज बना हुआ है जो पीले रंग का दिखाई दे रहा है। एक बल्ब भी लगा हुआ है।